सेंडिंग किसी हुई है सामने डबलीया बनी हुई है अलग अलग आकार के लोग कपड़े पहने हुए है।

टेबल पर दवाईयां रखी हुई हैं बोक्सेस मे डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं हाथ मे पर्चा लिए लोग खड़े हैं काफी संख्या मे हैं।

यहां उसके जिस्ट पीछे नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर काफी अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है मैटे बिछी हुई है।

एक कई सारे मजदूर वर्क कर रहे है लकड़ी की सेन्टीन्ग बनी हुई है।

साइकल है माइक लिए हुए है कुछ लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग है बड़े से आकर की--

स्टेज को काफी अच्छे से डेकोरैट किया गया है हार्डबोर्ड से।

आ इस इमेज मे बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं एक बड़ा सा ग्राउन्ड है ग्राउन्ड को चारों तरफ से बॉउन्डरी वॉल से पैक किया गया है।

काफी अच्छा इमेज है गाइज बहोत सारे बच्चे खड़े हुए है एक टेबल है टेबुल पर बिस्कुट रखी हुए है।

सामने कई सारी मशीने है एल_ई_डी बलब जल रहे है काफी अच्छा इमेज है।

बिल्डिंग पे लाल कलर का शटर है लाल कलर की --

दीवाल है लाइटे जल रही है भईया लोग मेहँदी कलर का पेंट पहने हुए है।